जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हैं उसमे अलाहाबाद बैंक लिखा हुआ हैं ।

साइड में काफी सारे बड़े - बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ छोटे पेड़ भी लगे है पीछे की तरफ आसमान दिखाई दे रहा हैं।

इसी की तरफ इसमें स्लाइट बनी हुई दिखाई दे रही हैं साइड मे बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं पीछे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं ।

सामने दो मोटरसाइकिल खड़ी है पीछे की तरफ दो बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

अम्बिकापुर ग्राम केरता जिला ऊपर लिखा हुआ है साइड में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

साइड में कुछ और बना हुआ है जिसमे एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।